बाइसाइकल एंड ट्राइसाइकल च जोकि ऑरेंज कलर येलो कलर डिफरेन्ट डिफरेन्ट कलर्स के हैं एंड यहाँ पे जो फ्लोर है वो ब्लैक कलर के है।

और यहां पे दुल्हा दुल्हन भी है और उसके पास में है एक लोग बन्दा है जो ब्लेक कलर की शर्ट पहना हुआ है।

यह एक मस्जिद की फोटो है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आये हुए है एन यहाँ का जो फ्लोर की कलर है वो है रेड एंड वाइट में का डॉट है।

इस फोटो में लेंटर की काम चल रही है एंड दो लोग काम कर रहे है सीमेंट से एंड उसके पास में बरा सा डॉम है | मिट्टी का एंड उसके पास नहीं है ।